सामने पर सफ़ेद नीला पीला रंग कू कूड़ान कूड़ों का बगल मा हम तैं कोलियाँ का डालां दिखेण लग्यां सामने पर हम तैं बड़ा-बड़ा पर्वतन दिखेण लग्यां।

यखम हमते एक होटल का भित्तर की फोटो दिखान छै कि दीवाल गुलाबी रंग की --

मत्थि जाणा खन त सफ़ेद रंग की सीडिन दिखेण लगीं वेका सामने छोटा-छोटा हर्या-हर्या पेड़ पौधा न दिखेण लग्यां।

ये खेल का मैदान की फोटो जेमा जी सामने पर हमथे द्वी-चार बड़ा बड़ा कोलें के डाला दिख्यें लग्यां।

गोआं दिखेण लग्युं के कोई घर नीलू रंग कु कोई घर पिला रंग कु सामने पर्वत पर हमते कोरा दिख्याणु की छायुं।

फोटो कैक पार्क मा च खिचयीं जैमा छि खेलना खादर बणायूं बच्चो खातड़ जैफर बच्चा घुमदा इख ओर-पोर नीला रंग की रेलिंग अन लगायीं।

यी फोटो एक खुला मैदान की जै मा जी हम त छोटी छोटी हरी घास दिखेण लगीं ज-सामणी पर रेलिंग दिखेण लगीं। चारो--

फोटो रात मा जी की ली नी छ बगल मा हम तैं पक्कु बाटु करन दिखेणु बाटा का बगल में हम तैं छोटा छोटा डाला दिखेण लग्यां।

यख मा हम ते पक्की रोडा दिखेण लगीं पार मथि हम ते जंगला दिखेण लग्युं कुड़ा पर --

बगलम हमि एक स्विफ्ट गाड़ी सफ़ेद रंग की खड़ी होईं एंच हम ते कई पेड़ पौधान दिखेण लग्यां कोई भिमल का डालान कोई कोल्यां का डालान।

यख हम ते एक पेट्रोल पंप दिखाईं गयो जै बटी साइड साइड बड़ा बड़ा म-रेलिंग पर नीला कलरम कुछ लिख्युं।